वह बिल्डिंग हमें येलो और वाइट कलर की पेंट की हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें एक मेन गेट दिखाई दे रहा है खिड़कियां दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर हमे आसमान भी दिखाई दे रहा है।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

जिन्होंने ब्लू शर्ट और एक ने तंबाकू कलर की पेंट पहना हुआ हैं।

जहां पर सर कुछ पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड हैं।

एक सोफा रखा हुआ है टेबल रखी हुई है।

यहाँ पर हमें एक मुर्गा दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक और ब्राउन कलर का है।

और यहाँ बहुत सारी हमे दुकाने दिखाई दे रही है।